यहाँ पे हॉल हैं टेबल लगी हुई हैं बीच मे टेबल हैं टेबल के आगे पीछे कुछ चेयर चेयर डली हुई हैं रखी हुई हैं व्यवस्थित तरीके से जैसे कोई फेस्टिवल --

और तालाब मे ब्रिज बना हुआ हैं ब्रिज निकालने से एक किनारे से दूसरे किनारे तक यातायात मे कोई भी रूकावट नहीं हैं।